बहुत सारा चीज़ साड़ी कपड़ा-तपड़ा है और भी क्या है बैठा हुआ है आदमी --

और बहुत सारा लाइट है और ढेर री के चीज़ है देख रहे है बहुत सारा चीज़ लाइट --

देख रहा है आदमी सब पढ़ता है अच्छा पढ़ना चाहिए देश का भविष्य है |